इन लोगों में से एक आदमी एक हेलमेट पेहना हुआ है।

ऊपर बड़ा सा शेड भी दिखाई दे रहा है।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

बिल्डिंग के बाहर बांस और रस्सी से एक फ्रेमवर्क बना दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स पर कांच लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

मैदान के बीच में एक लड़का नजर आ रहा है।